और टेम्पो भी चल रहा है और दुकान में काफी सारा सामान रखा है।

यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो घूमने आए हैं बड़ा-सा पार्क है।

और काफी अच्छा डिजाईन कर रहा है और काफी सुंदर लग रहा है देखने में और दो-तीन व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं।

लड़का है जो ढोल बजा रहा है और काफी बढ़िया स्टेज किया गया है । बैठने का सुविधा है ।

यहां पे आप देख सकते है छोटा सा तालाब है।

और काफी सुंदर सीन है।

बस साफ़ कर रहे हैं डिजाईन बना रहे हैं।

बैट के साथ बॉल भी है।